बाहर की तरफ ये गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं बड़ी कार और बाइक की ये फव्वारा स्वच्छ अंदर पानी लग रहा है।

एक बीच में रस्सी बीच में एक लाइन क्रॉस लाइन जैसी बनाई गई है।

साइड में और आस-पास आमने-सामने जमी हुई है।